सामने एक पार्लर रहे जेंट्स पार्लर जहा पर एक लड़के की दाढ़ी सेट किये जा रही।

सामने एक सफ़ेद कलर की दीवाल दिखाई दे रही है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है जिनपे हरे कलर के परदे टंगे हुए हैं| यहाँ पर कुर्सियां दिखाई दे रही है जिन पर कुछ--

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने कत्थई कलर की शर्ट और पैंट पहना हुआ है| यह आदमी चश्मा लगाया हुआ--

है इसने सर पर सफ़ेद कलर की टोपी लगाई हुई है| यहाँ कुछ बोरिया पड़ी है और यहाँ पर यह आदमी फोटो खिचवाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये लड़के के गले में एक रुमाल डला हुआ है इसने जैकेट पेहेनी हुई है।

खाली बिल्डिंग दिखाई दे रही हैएक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने सफेद कलर की शर्ट और लोअर पहना हुआ है यहा --

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने बनियान और लोवर पेहने हुआ है सफेद कलर का और जिस के हाथ में जिम करने के मशीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत सारे साइकिल वाले टांगे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं लेडीज़ दिखाई दे रही--

सामने एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे वह बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहा पर एक नाव दिखाई दे रही है।